और यहां पर पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी है लोगों की भीड इकट्ठी हुयी है बहोत ही ज्यादा लेडिस भी खड़े हैं जेंट्स भी --

पर आइसक्रीम मिलते हैं सभी प्रकार के एक आदमी अंदर जा रहा है और एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक स्टडी टेबल है यहां पर पढ़ान पढ़ने के लिए--

और यहां पर ट्रेनें जाती है और यहां पर खूब सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

बाहर पूजा की सामग्री रखी हुई है मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है।

इस किले को लोग बाहर से दूर दूर से देखने के लिए आए है ये राजा महाराजा को बनाया हुआ किला यहां पर कुछ लोग बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे --

ये एक भगती बाइक रिपेयरिंग सेंटर है यहां पर बाइक गाड़ियां का रिपेयरिंग होते हैं।

ये मंदिर है मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है लोग दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं।

मंदिर के बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए है ध्वजा लगी हुई है और यहां मौसम बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

है लोग यहां पर ट्रेनों में बैठने के लिए बैठे है बाहर भी बेचें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यह गाड़ी को अच्छे से पेंट कर रहा है पेंट ब्राउन कलर का कर रहा है।

बिल्डिंग है और ये बहोत ही पुरानी जैसी प्रतीत हो रही है इसके बाहर खूब सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं।